ये पिंक ऑरेंज कलर से पेंट किया हुआ है। वाटरपंप है।

और वहाँ स्टील रेलिंग लगाया हुआ है।

और यहाँ पे माता की तस मूर्ति में प्रतिमा में लेप लगाया जा रहा है। सिंदूर ये सब का।

आम के पेड़ को कटिंग किया हुआ है और दोनों एक साइज --

लड़का भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। चश्मा --

एक आदमी है जिसका कार खराब हो गया है जो इ ये इसे अच्छा से बना रहा है।

रोड के इधर टुटा फूटा उम्म --

ये एक कॉलेज है।

वाहन स्टैंड यहाँ से सभी वाहन स्टैंएएड में खड़े हैं।

अंदर जाने का गेट है।